जो रेड और येलो कलर का है उधर साइड पे कंपाउंड मारा हुआ है जो व्हाइट कलर का नज़र आ रहा है।

और साइड में हैं छोटे छोटे पौधे है और थोड़ा बड़ा हुआ है यहां पे और धूप भी दिख रही है।

यहां पे एक दुकान है जिसका नाम है बेबी डायरी लिखा हुआ यहां पर बच्चों के एक्सेसरीज हैं।

जाली से भरा हुआ है और आसमान साफ है आसमान में थोड़ी सी बादल नजर आ रहे हैं।

और असमान नीला है बादल दिख रहे है और यहाँ पर बड़ा सा फोकस दिख रहे है।

यहां पे एक गार्डन है जो गार्डन है यहां पे के लिए यहां पे स्लाइडिंग और यहां पे--

यहाँ पर है एक नक्शे जो यहाँ पे कुछ --